नमस्कार दोस्तों
जियोजेब्रा में चतुर्भुजक्वाड्रीलैटरल्स के गुणों को समझने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
कृपया ध्यान दें कि इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य वास्तविक कॅम्पास बॉक्स का स्थान लेना नहीं है
जियोजेब्रा में संरचना के गुणों को समझने के लिए बनाई गई है
हम मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा का बुनियादी ज्ञान है
यदि नहीं कृपया जियोजेब्रा पर प्रासंगिक ट्यूटोरियल के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल में हम चतुर्भुज साधारण चतुर्भुज विकर्ण के साथ चतुर्भुज बनाना सीखेंगे और साथ ही इनके गुणों के बारे में भी सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटु वर्जन 1110 जियोजेब्रा वर्जन 3247 का उपयोग कर रहा हूँ
हम संरचना बनाने के लिए निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट पॉलीगॉन एंगल पैरालेल लाइन सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स और इंसर्ट टेक्स्ट नई जियोजेब्रा विंडो पर चलते हैं
इसके लिए दश होम मीडिया एप्लिकेशंस अंडर टाइप एड्यूकेशन और जियोजेब्रा पर क्लिक करें
केंद्र आ के साथ एक वृत्त का निर्माण करें और जो बिंदु ब से होकर गुजरता है
यह करने के लिए टूलबार में सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल पर क्लिक करें
ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें
केंद्र के रूप में बिंदु आ
केंद्र सी के साथ एक अन्य वृत्त बनाते हैं जो डी से होकर गुजरता है
ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें
यह बिंदु सी दर्शाता है
तो फिर से क्लिक करें हमें बिंदु डी मिलता है
दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं
न्यू पॉइंट के नीचे इंटरसेक्ट त्वो ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
ई और फ़ के रूप में प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर क्लिक करें
आगे पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
बिंदु आ ई सी फ़ और एक बार फिर से आ पर क्लिक करेंयहाँ चतुर्भुज बन गया है
हम अल्जेब्रा व्यू में देख सकते हैं कि संलग्न भागों के 2 जोड़े बराबर हैं
आप जानते हैं कि क्यों
क्या आप इस चतुर्भुज का नाम पता कर सकते हैं
अब इस फाइल को सेव करते हैं
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम सिम्पल क्वाड्रिलेटरल टाइप करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा
अब विकर्णों के साथ चतुर्भुज बनाते हैं
नई जियोजेब्रा विंडो खोलें फाइल जीटीजीटी न्यू पर क्लिक करें
वृत्तखंड सिग्मेंट को चित्रित करने के लिए टूलबार से सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
ड्राइंग पद बिंदु आ और फिर ब पर क्लिक करें
वृत्तखंड एबी बन गया है
केंद्र आ के साथ एक वृत्त का निर्माण करें और जो बिंदु ब से होकर गुजरता है
यह करने के लिए सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट टूल पर क्लिक करें
केंद्र के रूप में बिंदु आ और फिर बिंदु ब पर क्लिक करें
टूलबार से न्यू पॉइंट टूल चुनें
बिंदु सी के रूप में परिधि पर क्लिक करें
आ और सी को जोड़ें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल को चुनें
बिंदु आ और सी पर क्लिक करें
अब वृत्तखंड एबी पर एक समानांतर रेखा खीचें जो बिंदु सी से होकर गुजरती है
यह करने के लिए टूलबार से पैरालेल लाइन टूल चुनें
बिंदु सी और फिर वृत्तखंड एबी पर क्लिक करें
हम बिंदु ब के लिए प्रक्रिया दोहराते हैं
बिंदु ब और फिर वृत्तखंड एसी पर क्लिक करें
ध्यान दें कि वृत्तखंड एबी की समानांतर रेखा और वृत्तखंड एसी की समानांतर रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
प्रतिच्छेदन बिंदु को डी के रूप में चिन्हित करें
आगे सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल का उपयोग करके बिंदु आ डी ब सी को जोड़ें
हम देखते हैं कि विकर्ण एडी और बीसी के साथ चतुर्भुज एबीसीडी बन गया है
विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
प्रतिच्छेदन बिंदु को ई के रूप में चिन्हित करें
डिस्टेंस टूल का उपयोग करके जाँचें कि क्या विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करती हैं
एंगल टूल में डिस्टेंस ओर लेंग्थ टूल पर क्लिक करें
बिंदु आ ई ई डी सी ई ई ब पर क्लिक करें
आगे हम जाँचेंगे कि क्या विकर्ण लम्बवत्त द्विभाजक हैं
कोण को मापने के लिए एंगल टूल पर क्लिक करें
बिंदु aeसी ceडी पर क्लिक करें
अब टूलबार से मूव टूल चुनें
बिंदु आ के स्थानांतरण के लिए मूव टूल का उपयोग करें
मूव टूल पर क्लिक करें आ पर माउस सूचक रखें और माउस के साथ इसे ड्रैग करें
ध्यान दें कि विकर्ण हमेशा एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं और लम्बवत्त द्विभाजक होते हैं
अब फाइल को सेव करें
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम क्वाड्रिलेटरल टाइप करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
संक्षिप्त में इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न टूल्स का उपयोग करके चतुर्भुज बनाना सीखा
सर्किल विथ सेंटर थ्राउघ पॉइंट पॉलीगॉन एंगल पैरालेल लाइन सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स और इंसर्ट टेक्स्ट हमने साधारण चतुर्भुज और विकर्णों के साथ चतुर्भुज के गुणों के बारे में भी सीखा
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप एक रेखीय वृत्तखंड एबी खींचें रेखा के ऊपर बिंदु सी चिन्हित करें सी पर एक एबी समानांतर रेखा खींचें
समानांतर रेखा पर दो बिंदु डी और ई को चिन्हित करें बिंदु एडी और ईबी को जोड़ें
वृत्तखंड एबी पर डी और ई से लम्बवत्त रेखा खींचें एबी पर लम्बवत्त रेखा के बिंदु फ़ और जी को चिन्हित करें डीई की दूरी और डीएफ की लम्बाई की गणना करें
नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ